ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैं जो रायपुर में हैं इसकी कप्यासिटी बहोत ज्यादा हैं लगभग पचास हजार।

वहां मौजूद सारे कर्मचारी समूह में है और एक कार भी है।

और यहां पे दर्शाया गया है कि ये सारे कर्मचारी एक साथ ग्रुप फोटो खिंचवा रहे--

यह एक गोदाम है जहां पर पांच मजदूर कार्यत दिख रहे हैं इनमें से चार मजदूर--

पी रावतपुरा सरकार इंटरनेशनल स्कूल रायपुर में स्थित है।

और उद्यान में एक टहलता हुआ व्यक्ति दिखाई दे रहा है और उद्यान के उस पार बहोत सारे वृक्ष दिख रहे हैं।

कुछ खिलाड़ी लाल रंग की जर्सी पहने हुए हैं तो कुछ खिला खिलाड़ी नीले रंग की जर्सी पहने हुए हैं।

यह सड़क है जिसके किनारे एक ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है।

नारंगी कलर से रंगा गया है इसी के सामने एक सफेद कलर का गेट है और--

और जे जे को एक विशेष तरह के सिंबॉल में--